दीवार पर हरे रंग का पेंट किया गया है।

गेट के ऊपर नीले रंग का बोर्ड भी लगा हुआ है।

ए कमरा है जिसके बाहर खेलने का मैदान भी है।